आपका फिर से स्वागत है
केवल सार देने के लिए कुकी ट्यूटोरियल के पहले भाग में हमने सीखा कि कैसे कुकीस बनाएँ कैसे कुकी को समाप्ति तारिख दें और कैसे विशिष्ट कुकीस को प्रिंट करें
इस कमांड को इस्तेमाल करते हुए हमने यह भी सीखा कि कैसे सभी कुकी जिनको हमने स्टोर किया है उनको प्रिंट करें
अतः यह मानते हुए कि हम इन कुकीस को बना चुके हैं अगला कार्य मैं यह करूँगा कि इस विशिष्ट कुकी को जिसको मैंने बनाया है यहाँ इस्तेमाल करूँगा यह देखने के लिए कि यदि यह अस्तित्व रखता है या नहीं
ऐसा करने के लिए हम एक फंक्शन नामक इसेट इस्तेमाल करेंगे
यह मूलतः किसी चीज़ के निर्धारित होने या न होने पर निर्भर करते हुए सही या ग़लत वेल्यु देता है
उदाहरणस्वरुप एक कुकी मैं एक डॉलर का चिह्न लिखूँगा फिर अंडरस्कोर कुकी और मैं यहाँ अंदर नामे लिखूँगा
अतः यदि मैं इसे अंग्रेज़ी भाषा में पढता हूँ तब मैं कहूँगा इफ थे कूकी नामे इस सेट थेन वे से एचो कूकी इस सेट
ओथरवाइज वे विल एचो आउट टो थे यूजर थाट कूकी इस नोट सेट
यह मानते हैं कि मैंने मेरी कुकी को निर्धारित किया और सब कुछ कार्य कर रहा है जब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ मुझे एक सूचना मिलती है कि कूकी इस सेट
अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कुकी को अनिर्धारित करें
अतः चलिए यहाँ लिखते हैं ठीक अपने इफ स्टेटमेंट से पहले मैं मेरी कुकी को अनिर्धारित करना चाहता हूँ
अतः अनसेट कूकी
अतः केवल बोलने के लिए मैं इस कुकी को अनिर्धारित करूँगा
यह मानते हुए कि यदि आपने इसो अनिर्धारित करना सीख लिया है तो आप इसको भी अनिर्धारित कर सकते हैं
अतः मैं इस नामे कुकी को अनिर्धारित करूँगा
अतः अनिर्धारित करने के लिए हम वही कमांड इस्तेमाल करेंगे और वह है सेटकुकी
अतः हम कुकी को पुनः तैयार कर रहे हैं
यह नहीं प्रतीत नहीं हो रहा है कि यह कुछ अर्थ बना रहा है किन्तु यह शीघ्र ही करेगा
अब हम कुकी का नाम कुछ नहीं निर्धारित करेंगे
और हमारी समाप्ति तारिख यहाँ है मैं एक न्य ईएक्सपी अनसेट के साथ बनाऊँगा
और यह इक्वल होगा टाइम माइनस 86400 के
यहाँ हमने प्लस लिखा है जिसका मतलब है टाइम आगामी है
अब इस वेरिएबल जोकि आगामी टाइम दिखा रहा है के लिए कुकी निर्धारित करके हम वास्तव में अनिर्धारित कर रहें हैं
अतः यदि मुझे कहना हो एक कुकी नामक नामे जो पहले से ही अस्तित्व रखता हो को किसी भी वेल्यु पर निर्धारित नहीं करना है
और टाइम को आगामी निर्धारित करने के लिए ईएक्सपी अनसेट वेरिएबल का इस्तेमाल करिये फलस्वरूप हमारा कुकी अनिर्धारित हो रहा है
अतः अभी के लिए मैं इस कोड से छुटकारा पाता हूँ और इस पेज को रन करता हूँ ठीक है
कुछ भी नहीं हुआ मानिए मेरी कुकी अनिर्धारित है
अब मैं इस कोड से छुटकारा पाना चाहता हूँ अतः मैं इसे कमेन्ट कर देता हूँ
और मैं अपना इफ स्टेटमेंट वापस पेज पर लिखता हूँ
अब मानते हैं कि यह कह रहा है यदि कुकी नामे निर्धारित है
मैं कुकी को अनिर्धारित करने जा रहा हूँ जिसको उत्तर देना चाहिए कूकी इस नोट सेट
चलिए रिफ्रेश करते हैं और हमें मिला कूकी इस नोट सेट
और फिर यहाँ से यदि आप चाहें तो आप इसे फिर से निर्धारित कर सकते हैं और आप कूकी की वेल्युस बदल सकते हैं
कूकी की वेल्यु बदलने लिए आपको फिर से सेटकुकी कमांड इस्तेमाल करना होगा
आप लिखेंगे सेट कूकी नामे और यहाँ केवल एक नई वेल्यु टाइप करेंगे
अतः कूकीस के साथ कार्य करना कठिन नहीं है
यह काफी सरल तरीका है
और यह पह्प में बहुत ज़रूरी चीज़ है
अतः इसको अपने दिल से प्रयोग कीजिये
देखने के लिए धन्यवाद
यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया मुझे बताइए
मैं रवि कुमार आईआईटीबॉम्बे की ओर से अब आपसे विदा लेता हूँ धन्यवाद